ये एक नदी है और इसमें बहोत सारी चिड़ियां भी हैं और इसके किनारे बहोत सारे घर भी बने हैं और बोट नाव भी खड़ी हैं।

यहाँ पर एक तालाब है और उसके आस-पास बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए है और ऊपर आसमान है और उसका पानी हरा-हरा है।

यहाँ पे सड़क के किनारे बहोत सारे लोग खड़े हुए हैं और बहोत सारी गाड़ियां भी निकल रही हैं। बाइक्स भी खड़ी हैं और साइकल्स भी खड़े हैं और पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।